यह धर्म को सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही मानते हैं। यहाँ पर लोग आ कर नमाज पढ़ते हैं।

जिम में लोग आकर अपनी मोटापे को कम करते हैं।

यह रोड पक्का रोड है। यह रोड के किनारे एक बैनर और एक पोस्टर लगवाया गया है।

यह एक समुन्द्र है। यह समुन्द्र में बहोत बड़ा-बड़ा जहाज चलता है।

यहाँ पर सभी मांसाहारी जानवर पाए जाते हैं।

यह एक रोड है। यह रोड में टू वे रोड बनवाया गया है। यह रोड में एक तरफ से गाड़ी जाती है और एक तरफ से गाड़ी पार होती है। यहाँ पर ना तो एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांस होता है ना और कुछ। इस रोड के किनारे एक बहुत बड़ा तालाब भी है।

यह एक तालाब है। यह तालाब बहुत बड़ा तालाब है। यह तालाब में बहुत पानी है। यह तालाब में लोग मछली मारते हैं। क्योंकि यह तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछली है। यहाँ पर मछुआरे हर रोज आते हैं और मछली मारते हैं।

यह सब खेत है। यह सब खेत में धान लगाया गया हैं। यह यहां पर बोहोत मात्रा में धान की खेती की जाती हैं। यहाँ जहाँ तक नजर जाता है वहाँ तक सिर्फ धान ही धान लगाए गए हैं। धान में किसानों की ज्यादा फायदे होते हैं।

बहुत से क्रिश्चन यहाँ पर केंडल जलाने ओर प्रे करने के लिए आते हैं। क्योंकि चर्च क्रिश्चन धर्म के लोगों का होता है।